इसमें बहुत सारे लोग दवाई लेने के लिए पर्ची लेकर खड़े हैं।

यह दृश्य एक तालाब का है जहां पर बहुत सारे कूड़ा करकट फेंके हुए हैं।

एक साइड एक ग्लास रखा हुआ है एक साइड बहुत सारे पेंट का डब्बे रखे हुए है पेंट का डब्बा का रंग येलो है।

में तीन व्यक्ति सोए हुए हैं जिसमें दो नर्स ट्रीटमेंट कर रही है।

इसके ऊपर एक पंखा भी लगाया हुआ है इसके दीवारें व्हाइट कलर से पेंट की हुई है।

यह एक कपड़ा और शू दुकान है जिसके ऊपर एक बैनर टांगा हुआ है जिसका नाम कादरी वस्त्रालय शू स्टोर है।

पीछे की साइड से सन लाइट्स आ रही है इस गार्डन में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

व्यक्ति के बगल में एक एक मशीन रखा हुआ है और उस मशीन पे पानी चढ़ाने वाला बोतल टंगी हुई है।

इस दृश्य में एक रूम है जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं बेड पर।

यहां पे एक दरवाजा है जोकि खुला हुआ है उसका कलर ब्राउन है।

कुछ डिब्बे में और कुछ पैकेट्स में--

सामने में एक मिरर भी पड़ा हुआ है।

दोनों ही दुकान के शटर खुले हुए हैं उस शटर का कलर ब्राउन है।

इसमें बहोत सारे साबुन रखे हुए हैं।

इसमें ऊपर पिक और ब्लू कलर का क्लींजर भी रखा हुआ है।

पीछे के साइड एक पुल है।

इस दुकान में तीन शटर है।

ये इस दरवाजे के ऊपर कुछ जानवरों के सिंह नजर आ रहे हैं जिस और इसमें हिरन बाघ ये सब का तस्वीर बनाया हुआ है।